और लाल रंग की है नीच में एक बड़ा-सा बैनल लगी हुई है जो नीला रंग की है उसमें कुछ लिखा है --

उसके ऊपर एक बैनर लगी हुई है जिसमें कुछ लिखा है और आस-पास अ बिजली की कुछ तार दिखाई दे रही हैं।

एक ग्राउंड दिखाई दे रही है जिसकी ऊपर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जो सफ़ेद और लाल रंग की ड्रेस पेहनी हुई है।

लाल रंग की शर्ट पहना हुई है।

इसमें एक पुराना ईमारत दिखाई दे रही है जिसकी दीवाल लाल रंग की है उसके ऊपर बहुत सारे नक्शा है सामने कुछ सीढ़ी है।

दो गेट दिखाई दे रहे है आस-पास टिल की कुछ बॉउंड्री भी दिखाई दे रही है एक महिला साइड में खड़ी हुई है और बहुत --

इसमें बड़ा-सा एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उसमें कुछ बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही है सामने एक --

इसमें एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रही है जिसकी ऊपर हरा रंग कि घास दिखाई दे रही है आस-पास कुछ पेड़ दिखाई दे रही हैं।

सफेद रंग की दीवार है दोनों तरफ लाइट जल रहा है और कई लोग दिखाई दे रहा है और सामने कुछ छोटा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक सब्जी और फ्रूट्स का मार्केट दिखाई दे रही है उसके अंदर एक व्यक्ति --

और सामने एक बड़ा-सा पेड़ भी दिखाई दे रही है आस-पास में कुछ पेड़ दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रही है।

इसमें एक एटीएम दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक बैनल लगी हुई है जो नीला रंग की ऊपर लिखा है एसबीआई एटीएम --

और कुछ सीढ़ीं दिखाई दे रही है आस-पास कुछ बिजली की तार भी दिखाए दे रही है।

इस में एक बांस दिखाई दे रही है जो खड़ा है वो सफेद और नीला रंग की है आस-पास कुछ लोग भी दिखाई दे रही है।

इसमें एक तालाब दिखाई दे रही है और उसकी आस-पास बहुत सारे खेत भी दिखाई दे रही है सामने एक मिट्टी की सड़क भी दिखाई दे रही है।

इसमें एक ब्रिज दिखाई दे रही है जिसके एक साइड हुई है इसमें नदी दिखाई दे रही है जिसकी पानी हरा रंग की है उसके ऊपर एक व्यक्ति है वे बच्चो ने खड़ा है।

वो व्यक्ति ने लाल सेट बना हुई है और बच्चों ने --

सफेद रंग की शर्ट पहने कर बैठी है और एक व्यक्ति सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई जो खड़ी हुई है कुछ ए.सी. दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रही हैं।

और सफेद और कमला रंग की ड्रेस पहनी हुई है पास में एक किनारा दिखाई दे रही है जो कमला और काला रंग की है।

सफेद रंग की है उस उस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही है।

इसमें बुक स्टाल दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है उस के ऊपर कमला रंग की एक बैनर लगी हुई है।

एक रूम दिखाई दे रही है जो सफेद और लाल रंग की है खिड़की दिखाई दे रही है पीछे में एक नील बोर्ड दिखाई दे रही है आस-पास बहुत सारे --

आ उसमें एक बैनर लगी हुई है जो नीली रंग की है आस-पास में --

इसमें एक नदी दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक ब्रिज दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बिजली की तार दिखाई दे रही है नदी की किनारा में --

ऊपर में स्टील से घेराब भी है ऊपर एक खड़की दिखाई दे रही है जो काँच की है सामने एक चेयर भी दिखाई दे रही है।